और इन बच्चों सभी के गले में आई कार्ड पड़े हैं।

और इस फैनो का रंग क ब्लैक है और ये यहाँ पर गेट है जिनका रंग हरा है।

कुछ छोटे बच्चे भी हैं और कुछ बड़े बच्चे भी हैं।

यह एक चित्र है यह चित्र किसी खाली मैदान का है।

और यहां पर बहुत अच्छी लाइट बल रही है।